केले के केलो के पत्तों की से अच्छा मंदिर सजाया गया है। यहां एक से एक श्रद्धालु दूर-दूर से आए हुए हैं।

यह श्री राम पैलेस के पास बना हुआ है। यहां पर बस का मालिक खड़ा हुआ है। यह बस बिल्कुल नई है इसपे फूल-माला वगैरह भी लगी हुई है। ये ग्राउंड बोहुत बड़ा है।

हैयर कटिंग की दुकान है। यहां पर एक से एक आदमी अपने बाल कटवाने आता है दाढ़ी बनवाने आता है।